और कई कई चीजे भी रखी हुई है।

यहां मिट्टी की सुरईयां बनती हैं।

अब रक्षाबंधन आ रही है इसलिए बाहर होटलों की दुकान बर्फी--